हमने बहुत सारी मछलिया केकड़ी बड़ी बड़ी मछलिया छोटी छोटी मछलिया बहुत सारे प्रकार की मछलिया रखी हुई है।

अपनी स्वेटर मे हाथ डाले हुए बैठा हुआ है ऊपर का छत रंगबिरंगी कलर से लाइट पन्निओंसे डेकोरट है।

सामने एक बहुत बड़ा मैदान- नदी दिखाई दे रही है जिसपे बहुत सी घास उगी हुई है बहुत सी औरते खड़ी हुई है जो कि इस नदी मे--